सामने में एक साइड शटर भी नजर आ रही है जो की ऊपर की और उठी हुई और नीचे में एक गणेश जी की मुर्तियाँ भी रखी गयी है।

गंभीर ड्राई क्लीनिक्स लिखा गया और नीचे में बहुत सारे तीन-चार लाइटे लगी हुई है और उसके ऊपर सीलिंग पे बहुत सारे --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

इस तस्वीर में एक ब्लू कलर का बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें वाइट कलर से आइडियल कोचिंग सेंटर लिख दिया गया है।